यह ग्राउंड दिखने में भी काफी सुन्दर और अच्छा है यह ग्राउंड हमें कई सारे ब्लब लगे हुए नज़र आ रहे हैं जो बहुत ही बड़ा और बहुत सुन्दर सा बल्ब है ।

यहाँ बहुत दूर-दूर से लोग इसे देखने के लिए और घूमने के लिए आए है यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हैं यहाँ लोग कुछ करने के लिए आए यह एक अच्छा सा घर भी यहाँ एक है जहाँ बहुत दूर-दूर से लोग भीड़ में इकट्ठे होकर यहाँ कुछ करने आएं हैं जो बहोत ही बड़ा और बहुत ही सुन्दर --

यह एक हमें बहुत ही अच्छा और बहोत ही सुन्दर सा इमेज दिखाया गया है जो दिखने में बहोत ही बड़ा और बहोत ही अच्छा है यह एक हिम हम हमें इमेज श्री हींग लाल बुक डीपो का दिखाया गया है।